और ये इंसान ये तीनों इंसान शायद किसी बारे मे मतलब बात कर रहै हैं।

ये आप देख रहे की ये है मच्छी बजार यहा पे काफी सारे लोग मछलिया खरीदने आए हुए है लेकिन सबने मास्क पहने हुए है और ये औरत जो है ये मछली बेचरी है आइ थिंक साफ करके बेचरी है।

ए-ये जो आपको व्यू दिख रहा है की ये बच्चों का डान्सिंग क्लास है और यहाँ पे बहोत सारे बच्चे हैं जो की डांस सीख रहे हैं कलरफूल ड्रेस पहनी है बच्चों ने काफी सुंदर लग रहे हैं डांस करते हुए छोटे छोटे --